एक स्टोर है स्टोर के अंदर एक मॉल है मॉल के अंदर लेडिसो के कपड़ो के सामान मिल रहा है और यहाँ पे एक लेडिसो के लिए कपड़ो के लिए एक टंगे हुए है जैसे कि अ रेड कलर का कुर्ता है और पास में टॉप पड़े हुए है वाइट कलर का टॉप है और --

ये एक मंदिर है मंदिर के पास में एक गेट है जो की गुलाबी कलर का एक गेट बना हुआ है गेट के ऊपर दो गुंमबज बना हुआ है गुंमबज में पी--

ये एक पट्रोल पंप है पेट्रोल पंप के पास में दो आदमी खड़े है जो कि पेट्रोल पंप का पाइप हाथ में लेके खड़ा होता है जिसके हाथ में एक बैग है बैग के पास में एक डस्टबिन है।

पत्थर पास में एक लड़का खड़ा है जिसने रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है और ब्लैक कलर की पेंट पहनी हुई है उसके हाथ मे एक वॉच है उसके पास मे एक और एक लड़का खड़ा है जिसने टाई पहनी हुई है और उस के पास में एक पेपर --